आई_सी_आई बैंक के सामने एक गार्ड है।

सामने नीले कलर का शेड है।

इसमें सुंदर पेड़ लगे हुए हैं।

पीछे की तरफ से एक दिवार है और आदि दीवार पर वाइट कलर किया हुआ है।

और एक कार की शत दिख रही है।

और कुछ दो लोग तीन लोग घोड़े पर चढ़े हुए हैं।

और पीछे का दरवाजा खुला है।

यह एक बेसमेंट में पार्किंग है।

पेड़ों की अलग अलग प्रकार की वैराइटीज --

एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने पीले कलर की शर्ट और क्रीम कलर की पैंट पहनी हुई है।

और नीचे फर्श पर डिजाइन दार टाइल्स लगी हुई है।

यहां सामने में खूनी लाल रंग में कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है।

लाल रंग के ऊपर दो लाइटे लगी है।

पता नहीं लोग क्या ले रहे हैं?

जहां पर बहुत सी तरह की चीजें हैं।

सामने एक लकड़ी की आर्ट है जो कि बहुत सुंदर है।

सामने एक दीवार है जो सफेद रंग की है।

जिसमें दारुओं अलग अलग दारू है।

झरने के पानी का बाहु--

यहा पर तीन प्यारे से बच्चे ड्राइंग बुक लेकर झंडा बना रहे हैं ड्राइंग कर रहे--

और सामने एक कोको कोला की फ्रिज है।

यहां साइड में एक ऑरेंज कलर की पाइप्स पड़ी है और एक मोटरसाइकिल खड़ा है।

यह एक सुंदर सा झरना है।

डैम में से पानी निकल रहा है।

और यहां एक बहुत सुंदर सा मैदान है।

सामने बॉक्सों में अलग अलग रंग हैं।

यहां पर एक सुखी घास है।

सामने एक गाड़ी खड़ी है।